इस इमेज में सामने यहां पर एक बेकरी दिखाई दे रही है।

सामने यहां एक सीढ़ी भी दिखाई दे रही है।

साइड में यहां पर एक व्यक्ति भी बैठा दिखाई दे रहा है।

जहां पर बोर्ड लगा नजर आ रहा है।